एक क्लास रूम है जहाँ पे वाइट कलर के बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है साइड में एक टीचर खड़े हुए है।

एक बोर्ड पे एयरटेल फॉर-जी लिखा है और एक बोर्ड पे वोडाफोन लिखा हुआ है।

सीलिंग में बहोत सारी लाइटे जल रहीं है।

और तीन बड़े- बड़े पेड़ लगे हुए है जमीन में कुछ बोदी पड़ी हुई हैं ।

और अपनी फोटो खिचवा रहा है जिसने वाइट कलर की टी-शर्ट पहनी है।

जमीन में भी कुछ सामान रखा हुआ है।

ग्राउंड के बोर्डर में बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए--

एक पोस्ट ऑफिस है जहां उसकी दीवाल पर नीला कलर का बोर्ड लगा है।

एक बड़ी सी बिल्डिंग है उसपे लिखा है डी_एल_एस_पि_जी कॉलेज बिलासपुर।

और कुछ लोग घूम रहे है।

गेट के ऊपर एक बैनर लगा है डी_पि_पि_एस महाविद्यालय--